यहाँ से ये जगह पर बहुत सुन्दर-सुन्दर जिम करने के सामान रखे गए हैं। यह जिम क्लास में बहुत से लड़के भी हैं। यह जिम क्लास के दिवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं। जिम करने से --

ग्राउंड है । इस ग्राउंड में तकिये की है । यह ग्राउंड में बहुत सारे कुर्सिय लगी हुए है । ये हम बहुत से दिवाले भी है । उन जगह पर बहुत से व्यायाम करने की जगह है ।